बहुत ही अच्छा नजारा दिख रहा हैं एच-डी-एफ-सी बैंक दिख रहा हैं उसके वोकल गन शाखा के अंतर्गत आता हैं एक मुस्लिम महिला जो--

और एक पेंटिंग दिख रहा है उसमे कुछ समान नज़र आ रहे है प्यानो टाइप के एक एल_ई_डी नज़र आ रहे है।